यहा पर एक दुकान है और दुकान पे शॉपकीपर बैठा हुआ है।

और ऊपर छत पे व छत साइड पे पंखा लगा हुआ है और वहां पर कई सारे--

टॉव्यज् भी रखे हुए हैं जैसे-टेडी बियर डॉल्स गर्ल्स टॉव्यज् बॉय टॉव्यज् अलग-अलग टॉव्यज् --

यहां पे एक दुकान है दुकान में कई सारे सामान है और वॉल --

दो साइड है एक साइड दोनों साइड पे लाइट भी है और वॉल पे लाल और व्हाइट रंग का पेंट किया गया है।

और दे-काउंटर में भी बहुत सारे सामान रखे हुए हैं रैक पे--

और रैक पे भी सामान रखे हुए हैं और कुछ आदमी बैठे हुए --

और जस्ट सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं।

और वहाँ एक आदमी एम्म-गिटार हाथ में लेके माइक के पास खड़ा है और सामने--

और इस दुकान मे बहोत सारे सामान रखे हुए है जैसे कि फेविकोल वगैरा गोंद वगैरा पंखा लगा हुआ है शीशे का गेट लगा हुआ है।

गोल्फ पे कई सारे डीजे लाइट्स लगाए गए हैं और यहाँ पे--

जो कि मंदिर के बोर्ड पर लिखा हुआ है शिव हनुमान मंदिर।

और यहाँ पे काफी लंबा मंदिर है काफी ऊंचाई में मंदिर बना हुआ है।

इस चित्र में एक क क उम्म एक भवन दर्शाया गया है।

एक्सरसाइज करने के लिए और डम्बल भी रखा हुआ है दस के_जी का पंद्रह के_जी का।

और मकान के ऊपर शीट डाला गया है जो कि शीट के--

इस चित्र में एक रूम दर्शाया गया और रूम --

इस ग्राउं इस चित्र में एक ग्राउंड दर्शाया है जो की ग्राउंड के ऊपर दो लोग --

दूसरा क्रिकेटर जा रहा है और एक बॉलर के बगल में कुछ कपड़े भी बिछाए गए हैं।

और बॉयलर के पीछे तार से क्या चीज तो गई हुई है और--

यह पता नहीं क्या है और मिरा-सा जैसा--

कई सारे वॉशिंग बेस रखे हुए हैं जैसे की--

और उस शॉप में लाइट्स भी लगे हुए हैं और पंखे भी हैं।

और टाइस भी का टाइप का कुछ लग रहा है बेचा जा रहा है टाइस और --

इस चित्र में ये एक रूम दर्शाया गया है जो कि रूम में कई सारे लोहों लोहे के सामानस से--

ऐसा मानो की उन्हीं का अड्डा हो और यहां पे लाइट्स लगें हुए पंखे भी लगे हुए हैं।

और दिवाल पे बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रिक बोर्ड और फ्रिज भी है।

और यहाँ पे डस्ट -फ्रिज के बगल में डस्टबिन भी लगाया गया है।

इस चित्र में आपको एक मेज दर्शाएंगे और उस मेज के ऊपर हरे रंग का पेंट किया गया है ।

मेज के ऊपर कई सारे छोटे छोटे बॉल्स रखे हुए हैं।

और एक आदमी डंडे से उन्हें मार रहा है।

कार्ड -बोर्ड या दफ्ती लगाए रखे हुए हैं बना-बना के।

अं इस चित्र में आपको बाहरी एरिया दर्शाया गया है जोकि यहां पे--

कपड़े लगाए गए हैं और मेजों में कपड़े लगाए गए हैं और यहाँ पे एक झूला भी है।

और यहाँ वर्कर्स ने इससे बनाया है और दरवाजे पे कई सारे लाइनिंग्स भी है और लास्ट में जा के डिजाइन भी बनाया गया है।

और यहां पे बहोत सारे भीड़ भी है।

नदी भी है और उद माँस पे के प्रे के तार से--

इस चित्र में बाहरी एरिया दर्शाया गया है और यहां पे बहोत सारा भीड़ लगा हुआ है।